यहां हम देख सकते हैं यहां पे हमें भारत सरकार वित्त मंत्रालय आयकर विभाग नजर आ रहा है।

एक बहुत ही बड़ी सारा खुला सारा मैदान है।

यहां पे एक नदी है उसमें आप देख सकते हैं बहोत ही सारी पब्लिक है।

खुद देख सकते है सब मिल बाट के साथ में--

स्वयं मानसिंह हॉस्पिटल है आप खुद देख लीजिए इसके बाहर कुछ फोर व्हीलर खड़े है कुछ पब्लिक हमे दिखाई दे --